और पीछे एक बिल्डिंग दिख रहे हैं बाइक दिख रहे हैं बाइक पर बैठे हुए आदमी दिख रहे हैं इंटा दिख रहे हैं।

इस दृश्य में पानी दिख रहे हैं जाते हुए मिट्टी दिख रहे हैं।

उधर बहुत सारे हम पेड़ दिख रहे हैं इधर बादल दिख रहे हैं।

पौधे बहोत सारे दिख रहे हैं मिट्टी दिख रहे हैं।

इस दृश्य में दो आदमी दिख रहे--

एक लेटा हुआ है एक अपना काम कर रहा है एक टेबल दिख रहा है टेबल के ऊपर फूल दिख रहा है फुल के साथ दो तीन प्लेट दिख रहे हैं एक बाल्टी दिख--

की दिख रहा है दो कुर्सी दिख रहा है टेबल के ऊपर--

शुभ घर लिखा हुआ है।

और इधर मे साड़ी उड़ी के माल है एक--

सफेद कलर का कुछ दिख रहा है।

यह एक घर दिख रहा है।

इस दृश्य में दिख रहा है सैलून है एक बाल कटवाने का एक आदमी बाल कटवा रहा है।

एक पानी का जार दिख रहा है गेट खुला हुआ दिख रहा है ब्लू कलर का।

इस फोटो में डाइनिंग टेबल दिख रहा हैं खड़ा हुआ है उसके ऊपर भी एक डाइनिंग टेबल उसके पीछे एक दिवांग टंगा है।

व्हाइट कलर की दीवाल दिख रहा है।

इस दृश्य में दिख रहा है कि तीन आदमी अपने काम कर रहे हैं लोहा एक काट रहा है एक लोहा बना रहा है।

हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

इस फोटो में अंदर से टायर बहुत सारे दिख रहे हैं।

मुझे एक फोटो दिख रहा है गाड़ी का दो तीन एक कार का दिख रहा है फोटो ।

और एक बड़ा सा टैंक दिख रहा है पेड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

और एक उनकार भी दिख रहा हैं उनकार।

इस दृश्य में दिख रहा है कि एक लड़का है सैलून में बाल कटवाने वो अपना लाइट जलाया हुआ है।

ट्रिमर दिख रहा है।

बॉक्स दिख रहा है।

ये व्हाइट कलर का अह दीवाल दिख रहा है कुछ लिखा हुआ है ब्लू कलर का भी।

घर एक का ये है लोहेे है रास्ता है।

तोलने वाला समान दिख रहा है लोहा दिख रहा है एक टेबल दिख रहा है।

बोला-बोरा दिख रहा है ब्लू कलर का रेड कलर का वाइट कलर का बाल्टी दिख रहा है।